चित्र में एक जंगल का है जंगल का बीचो बीच रास्ता गया है।

आए हैं कुछ लोग खेल रहे हैं। कुछ यहां पर ही बैठे हैं।

कोट टांगा गया है।

एक किराना दुकान है इसमें हुम् तीन व्यक्ति समाने खरीद रहे हैं।